ऐसा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे एक बड़ा सा खम्बा दिखाई दे रहा है उसके नीचे छह सात सीढ़िया दिख रही है उसके बाजू में बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है।

एक पुराना मंदील दिख रहा है जो की दिगम्बल जैन मंदील दिख रहा है उसका कलर नीला दिख रहा है।

उसके अंदर एक बिल्डिंग दिख रही है। जो की लग रहा है वो एक महाविद्यालय है। उसके बाजु मै बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है। गेट के बाजु मै दो खम्भे दिख रहे है। जिसका कलर नारंगी और ग्रीन है।

इक बड़ा सा तालाब दिख रहा है उसके बाजु मै बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

उसमे एक विंडो दिख रही जिसमे एक रेड कलर का कर्टेन लगा हुआ है बिल्डिंग के बाहर दो तिन गाड़ियाँ दिखा रही हैउसके बाजु में कुछ अ टायरे भी दिख रही है।